यहां पूजा में बहोत सारे लोग बैठे हुए है और यहाँ बहुत सारे फूलो से सजाये गए है।

और इस दुकान में बहोत सी प्रकार की सामान रखी हुई है।

इस कॉलेज के बाहर में एक पेड़ लगा हुआ है और यह कॉलेज एकदम सड़क के बगल में ही है | इस कॉलेज में बहुत ही भीड़ रहती है।

और यह सोफा अभी अभी बना है और यह देखने में बहुत ही सुन्दर है | यह एक कमरे में रखा गया है।

और यह मूर्ति एक टेबुल के ऊपर रखा हुआ है यहाँ इस घर के लोग इस मूर्ति की पूजा करते है।

इस बस स्टैंड पर बहुत सारी बसें खड़ी हैं और यह बस बहोत बड़ी है इस बस में बहुत सारे लोग सवारी करते हैं।

इस होटल में बहूत सारे लोग नास्ते करने के लिए आते हैं और यहाँ एक टेबल पर एक प्लेट रख --

एक फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन रखी हुए हैं।

और ये फैक्ट्री बहुत ही बड़ा है इस फैक्ट्री में बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

इन मूर्तियों में बहुत सारे माले पहनाये गए हैं।